इस तस्वीर में लोहे की टावर बनाई गयी है जिसमें बहुत सारी अलग-अलग लाइट्स लगे हुए हैं और इसमें बहुत सारी --

औरतें जोखम जुखे कर रही है और उसमे बोहोत सारी स्पीकर भी है और वहा पे स्टेज पे एक स्पीकर है।

कनेक्ट ल कनेक्ट कर के लगाई गई है।

और यहाँ पर बोहोत सारे लोग भी है कुछ बैठे हुए है कुछ खड़े है और यहाँ पे स्पीकर भी लगाए हुए है दरी बिछाए हुए है और बोहोत सारे कुर्शी और टेबल्स भी लगे है यहाँ पे --

और उसने जूते पहने हैं |

इस तस्वीर में एक आदमी जोकि हेलमेट लगाए खड़ा हैऔर उसके पीछे एक बोर्ड हैऔर बोर्ड के ऊपर पंखा भी लगा हुआ हैऔर यहाँ पे एक आदमी जिसके हाथ में टावल है।

जिसपे अडिशनल जिम क्लब लिखा हुआ है और इस दुकान के बाहार बोहोत सारी चपल खुली हुई है और पर्दा लगाया हुआ है और इस दुकान के बगल मै एक अ--

इसमें कुछ डस्टबिंस है जो की पेंगुइन सेप की है और आस-पास बहुत सारे पेड़ भी है।

कुछ घास भी है और यहाँ पे छोटे-छोटे दिवार के हरे कलर से रंगा गया है। यहाँ पे कुछ पोस्टर लगे हुए है।

जिसके बीचो-बीच अ पानी है और पाने के बीचो-बीच एक फो वाटर फाउंटेन लगा हुआ है।

इस तस्वीर में कुछ किनारा दुकाने दिखाई गयी जिसके बाहर बोरी में --

और ये जो स्कूल मै टाइप मै जो है ये अ कुछ पूरा सा दिख रहा है उसके आस-पास कुछ अ पेड़ भी है।

वेदांता बुक वर्ल्ड लिखे हुए है थोड़े छोटे-छोटे वर्डस में और इस दुकान के ऊपर बोर्ड पे बुक्स लिखे हुए है।

और लिखा हुआ है और इसके बाहर सफ़ेद रंग की अपाची लगी हुई है |

और फॉर व्हीलर भी लगे हुए है और यहाँ पे एक बड़ा-सा गेट जो की काले रंग का है।

इस तस्वीर में एक होटल दिखाई गया है जिसपे बड़े-बड़े अक्षरों में इंग्लिश में द स्ट्रीट टेस्ट लिखा हुआ है और इसमें बहुत सारे पंखे लगे हुए हैं |

और कुछ बाइक भी लगे हुए है कुछ पोस्टर पे अ अब आंध्र बैंक इंग्लिश मैं और हिंदी मै लिखा हुआ है किसपे केनरा बैंक हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ है।